कच्ची सड़क दिखाई दे रही है और इसमें--

और इसमें बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं।

लाइन बनी हुई है और छोटी-मोटी सिखांस लगी हुई है वातावरण हरा है।

और सामने कुछ पर्दे दिखाई दे रहे हैं।

रिपेयर कर रहा है और सामने एक और बाइक खड़ी हुई है।

और यहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं बाइक पॉइंट ।

इस चित्र में एक बस दिखाई दे रही है वो बस के सामने एक ऑटो खड़ी हुई है।

अच्छी जगह दिखाई दे रही है एक रेड क वाइट कलर की बाल्टी रखी हुई है।

उससे ज्यादा तर खाली है वो बस के सामने दो पेड़ लगे हुएं हैं।

और वहीं वहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है पेड़ के नीचे--

और सामने से एक ट्रेन आ रही है ट्रेन के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है।

इस चित्र में मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान में--

और भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और एक टेबल दिखाई दे रही है टेबल के ऊपर कुछ डब्बे और कुछ सामान रखा हुआ है कुछ इंचीटेप भी रखा है।

क्लासरूम दिखाई दे रहा है क्लासरूम में कुछ बच्चे--

इस चित्र में मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

बगीचे के सामने एक घर बना हुआ है घर के--

ये है दुकान डेरी फॉर्म है और यहाँ पर बहुत--

और कुछ फ्लाईट की लाइनिंग्स लगी रखी हुई हैं।

और इसमें कुछ फूल रखे हुए हैं बैठने के लिए चेयर भी लगी हुई हैं।

एक लड़का चप्पल पहन कर खड़ा हुआ और बाकी मुझे वहाँ पर एक ब एक--

अंदर मुझे काला भवन दिखाई दे रहे है कला भवन गोल्डन कलर का है।

उसमें बहुत सारी खिड़की लगी हुई हैं नीचे बहुत सारे बाहर।